और ट्रेन कलर का डबा प अदा हुआ है सोर्कत लगा हुआ है।

और इसमें बहुत सारे पत्ते वाते गिर हुए है ।

किराने का दुकान सब है यहाँ पे बहुत सरे सामान सब रखे हुआ है कुछ दवाई ववाइ जैसा कुछ सब रखा हुआ है शीशी में सब रखा हुआ है सॉस सब है।

केक है केक बहोत दिल टाइप का सजा हुआ है गोला कलर का केके है और दुकान के सामने एक स्कूटी भी है और कार भी लगा हुआ है सामने में |

और बैठने के लिए चेयर उअर सब बना हुआ है डस्ट्बिन है ।

और बहुत ही कुछ कूरा कचरा पड़ा हुआ है पार्क मे आदमी सब टहल रहा है एक रेड कलर का पेड़ भी है और रास्ता भी बना हुआ है जहाँ आदमी टहल--

और कपड़े यह सब कुछ और यह मोड़ टाइप का ही कुछ है।

गुलाब का फूल है जो बहुत ही मस्त नजर आ रहा है| बहुत सारे गुलाब का फूल है| ऊपर वाइट वाइट कुछ लगा हुआ है।

पानी बहुत मस्त है। कछुआ सब है तीन-तीन कछुआ है।